बॉटल्स रखा हुआ है पानी का उसके बाद उसका पीछे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स रखा हुआ है।

एक कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।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

और यहां में बहुत सारे बरा बरा घास भी है और बहुत सारे हरा भरा घास है उसके बाद एक तार भी दिखाई देने को मिल रहा है।

गेट में दो बड़ा बड़ा लाइट बल्ब्स लगा हुआ है उसके बाद उसका पीछे बहुत हरा भरा ग्रास है और माउंटेंस भी है।

और उनका ठीक सामने में एक बड़ा सा बैनर है जिसका सामने में एक आदमी का फोटो नजर आ रहा है जोकि क्लियर नहीं है उसका दो ठो फ्रेंड दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर बहुत सारा सामान है जोकि कार्ड बोर्ड का अंदर में है।

तस्वीर को देखकर मुझे यह लग रहा है कि यह एक शॉपिंग मॉल है और इसमें बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ है।

ड्रम भी दिखाई दे रहा है जो कि ब्लू कलर का है उसके बाद उसका पीछे में बहुत सारा बॉक्स है जो कि थर्मोकोल से बना है उसको ऊपर में एक बकेट है लोहा का।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

बहुत सारा आदमी भी खड़ा हुआ है उसके बाद--

और यहां बीच में एक सुंदर सा एक सोफा रखा हुआ है जो की वाइट कलर और रेड कलर का है।

नीचे में कारपेट बिछाया हुआ है।

इसमें एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसमें फूड ट्रेक लिख के है।

एक आदमी ने व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है और ब्ल्यू कलर का जींस पहना हुआ है और टोपी भी पहना हुआ है।

वहां में एक दुकान भी है वहां में ऊपर मे वेलकम लिखके है रेड कलर से।

क्ले से बनाया हुआ है और बहुत सारा गीजर भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

और बीच में एक बस भी दिखाई देने को मिल रहा है।

साइड में नोकिया लिख के है।

बहुत सारा बैलून ऊपर में लटकाया गया है और बहुत सारा लाइट्स भी दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर बहोत सारा ड्रास भी दिखाई दे रहा है उसके बाद--

बहुत सारा परफ्यूम क्रीम दिखाई दे रहा है उसके बाद--